और कुछ बैलून्स भी लगे हुए हैं इनका कलर ब्लू रेड है।

बिजली का खम्भा भी दिखाई दे रहा है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और निचे जमीन दिखाई दे रही है |

बहुत सारे जंगल टाइप का भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड पौधे भी दिखाई दे रहे हैं ।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

कुछ पोस्टर वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं और निचे जमीन भी दिखाई दे रही है ।